घर पे जो पीला कलर जल रहा है।

ग्रीन कलर की बिल्डिंगे हैं।

पानी में सूरज की पीली रोशनी है।